जिसमें से एक तरफ गेहूँ जाता है और एक तरफ से आटा निकलता है।

यह तस्वीर एक पुरानी घर की है जो अब उसपे काले धब्बे आ गए हैं।

वो दिखाई दे रही है जो एक मुजफ्फरपुर नगर निगम का घर लग रहा है यहाँ पे बाहर में एक नीले कलर का कूड़ेदान भी रखा गया --

यहाँ पर ढेर सारे जिम के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

यहाँ की जमीन पर भी छोटे-छोटे घास उग हुए हैं।